और यहां का आसमान पूरा बादल-बादल भी दिखाई दे रहा है।

जमीन का साथ बहुत सारा रॉड निकला हुआ भी नजर आ रहा है।

और यहां का दीवाल का कलर लाल और पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है।

यहां पर ही दो कॉन्टर का सामने एक पुरुष खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यहां का टाइल्स येलो और लाल कलर पे दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर ये बाउंड्री में पूरा लोहा का सामान लगा हुआ दिखाई दे रहा--

और यहां पर ही बहुत सारा लाइट जलता हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यहां का टाइल्स का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है।

यहां पर ही लाईबो का हैंडवाश भी है।

बहुत सारा रंग बिरंगा बैलून भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक मस्जिद दिखाई दे रहा है।

यहां पर ही बहुत सारा पंखा भी है।

एक महिला चाय पीती हुई दिखाई दे रही है।

और बगीचा में बहुत सारे हरे भरे गांच भी दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पारी काउंटर के ऊपर बहुत सारा दवाई रखा हुआ है।

एक स्टेपलर और पेन दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक लोहा का ग्रिल से घिरा हुआ भी दिखाए।